कुछ बट्टे सूखे हैं तो कुछ सूखे हुए है मानों वह भुट्टे बहुत ही हवा में सूख गये हो मानों आ के --

यह तो देखो पेड़ पौधे भी लगे हुए है ये पत्ते भी हैं पत्ते हरे मुड़ाड़ है मानो वहां बिल्कुल सुख गए हैं पर पत्ते तो बिल्कुल--

अच्छे नहीं लगते है देखने में तो बड़ी छोटी-छोटी इलायची हैं बड़ी छोटी-छोटी लीचियाँ हैं।

गाड़ी बहुत ही अच्‍छी है सुंदर गाड़ियां लग रही हैं शोरूम भी बहुत अच्‍छा सुंदर सजा हुआ है मानो वो बहुत ही सुंदर त अभिनंदन लग र --

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ जो मुझे दृशय दिखाई दे रहा है वह द्रश्य अभी का नहीं बल्कि शाम का दृशय सूरज --

कैफै का है जो की बहुत सुंदर लग रहा है बहुत सारी लाइटिंग यहाँ पे हुई है बैलून --

बैलून लगे हुए हैं बैलून बहुत रंग बिरंगे लग रहे हैं बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं जो खाना खा रहे अभिनंदन कर रहे अपना टाइम को पास कर रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है वह दृश्य एक नदी का दृश्य है शांत निश--

ते है वह समान बहुत ही अच्छा समान होते है बिल्कुल अच्छा होता है समान यूज़ करने लिए बहुत ही --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे जो दृशय दिखाई दे रहा है वह दृशय --

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ मुझे जो दृशय दिखाई दे रहा है वह एक कोचिंग इंस्टिट्यूट का दृशय प्रस्तुत कर रहे हैं --

एक मंदिर में तो बहुत ही ऊंची पहाड़ियों के ऊपर रखा हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ के मंदिर बहुत ही अति उत्तम --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह बड़ा सा खेल का मैदान है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े है ।

खड़े हुए हैं हाथ में बल्ला लिए हुए हैं वह खेलने के लिए आए हैं हरी हरी घास बसी हुई है बहुत ही--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह अति रमणीय एवं विचारणीय लग रहा हैं यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी--